एच ए आर ओ लिखा गया है।

ये लोहा है ये दोचाकिआ गाड़ी है।

एगो आदमी जा रहा है लाल कलर के पहना है कपड़ा हाथ में पहना हाथ में धरा है प्लास्टिक ।

बोल बर रहा है नीचे बैठे वाला कुर्सी है।

टेंपू है बहुत सारा आदमी है।

यहां लिखल है बी ए आर ए ।

। बहुत सारा आदमीन है टेंपू है बाइक है

चित्र में दिखाई दे रहा है एक दुकान है। कलम का दुकान है बहुत सारा कलम हैं।

ये इने घर है।

नीचे दो बाल्टी है इधर दु डिबा है।

तो तार के खंबा गया है तार है।